पीछे मम पिलर पिलर पे मम बना हुआ है पीछे हरा-हरा पत्ती दिखाई दे रहा पेड़ छोटा सा।

कई सारी बस खड़ी है छोटे पेड़ कुछ बड़े पेड़--

पत्थर के बीच में भी छोटे छोटे पौधे जमे हुए हैं।